यहां पर हमें एक गोदाम दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी बोरियां रखी हुई है और एक व्यक्ति सर पर बोरी रख के ऊपर की और चढ़ रहा है। बाहर कुछ एक ठेला रखा हुआ जिस पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं और उन्होंने मास्क और टोपी लगा रखी है।

रेड कलर के रिबन भी दिखाई दे रहे हैं। पार्लर में कई तरह के सामान रखे हुए हैं।

यहां पर हमें बलून्स दिखाई दे रही है ऐ.सी भी दिखाई दे रही है। यहां पर हमें घड़ी भी दिखाई दे रहा है और झंडा भी दिखाई दे रहा है लाइट्स भी दिख रही है और यहां पर कुछ पेपर्स और प्लेट्स भी दिख रहे हैं।

यहां पर हमे गेट दिखाई दे रहा है जो काफी बड़ा है। गेट बंद है गेट को रेड येल्लो और गोल्डन कलर से डेकोरेट किया गया है। ऊपर गेट में कुछ जाली सी लगी हुई है।